और इस तस्वीर में बहोत सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक पंखा लटका हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कला कलर के पाइप भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बुद्धिस्ट टेंपल दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे रेस्टोरेंट का फोटो दिखाई दे रहा है।

ऊपर में चमकते हुए लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे बहुत सारा चेयर्स और टेबल्स दिखाई दे रहा है।

ग्रीन येलो और रेड कलर का चेयर्स है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा मैदान दिख रहा है।

घर के पास बरे बरे पेर भी दिख रहा है।

मे बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे पेट्रोल भराने की दो जगह दिख रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर में दो सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे एक बड़ा सा ट्रे भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे चू कैफे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे तीन मूर्ति दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे कैपिटल डेंटल क्लिनिक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पांच आदमी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे प्योर बाई नेम प्योर बाई नेचर लिखा हुआ बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक मेंगलन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बत्तख दिखाई दे रहा है।